उस पर पर्दे लगे हुए हैं इसमें--

यहां पर एक म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है।

यहां पर एक दवाइयों का मेडिकल बना हुआ है।

यहां पर नीले रंग से फ्लेक्स के ऊपर लिखा हुआ है।

फ्लेक्स पर उनका नंबर भी लिखा हुआ है।

लाईटों का रंग हरा पीला नीला है।

क्लीनिक का है पूरे चिटे रंग का सामान पड़ा हुआ है।

यहां पर कई प्रकार की मशीने हैं।

दुकान के बाहर खड़ी है दुकान पर शटर लगा हुआ है। शटर का रंग--

यहां पर एक मेज़ पड़ा है मेज के ऊपर एक कंप्यूटर पड़ा है।

यहां पर सफेद रंग का पर्दा लगा हुआ है।

घर में बहुत बड़ा काले रंग का गेट लगा हुआ है इसके बाहर एक ट्रांसमीटर है।

यहां पर बहुत प्रकार की लाइटे लगी हुई हैं यह एक बॉक्स में बंद है।

यहां पर बहुत प्रकार की मछलियां है। मछलियां भिन्न-भिन्न प्रकार के बाउलों में है।

छिटे रंग की टाइले लगी हुई हैं यहां पर मछलियों के बाउलो का रंग भी है बहुत।

एक दुकान खुली है एक दुकान बंद है एक दुकान पर पीले रंग का शटर लगा हुआ --

यहां पर बोरियों में कनक को भरा जाता है।

मुंदर के साइडो में पौधे लगे हुए हैं।

वो भी बहुत सुंदर दिखाई दे रही हैं।